सरदार जी जहां पे बे अ है वो काम कर रहे हैं।

यहां पे मुझे लग रहा है यहां पे बहुत सारे आदमी हैं वहां पे पीछे गाड़ी भी है।

क्योंकि इनके पास एक कैमरा भी है लगा हुआ वो उस कैमरे को कैमरे पे साइट को देख रहे हैं पीछे गाड़ियां भी है उसमें सामान भी बोहोत है।

और उधर लगे हैं बहुत सारे अ अ यहां पे बैनर लगे हैं जिस पे लिखे हैं कि --

उस साइड में गाड़ी भी है उसके ऊपर कुछ है और एक टावर दिख रहा है।

दो आदमी हैं जो स्कूटी पे हैं कि बाइक पे हैं वो यहां से राइट साइड से एक और लेफ्ट साइड से एक।

और ऊपर से ऊ सबस कलर का एक--

बड़े-बड़े अ अ इनमें भरे हुए हैं।

व इससे लोहे की उनसे वहां पे एक आदमी भी खड़ा हैं उस साइड पे दूसरे साइड पे एक छोटी सी बिल्डिंग भी दिख रही हैं।

और इस पे पूरा यहां पे लोहा बंधा हुआ है काम के लिए।

यहां पे मुझे लग रहा है कोई कारखान ना है क्योंकि यहां पे चल रहा है काम--

अ वहा पे बहोत सारी मिट्टी है।

वैसे तो एक रूम सा लग रहा है अह साइड में वहां पे एक अच्छी सी पेंटिंग है।

हाँ अ बीच में चारपाई डाली है उस पे कुछ बिछाया है कपड़ा।

उसपे केटल भी है कुछ एक दो गिलास भी है।

एक दो मकान भी जैसे दिख रहे हैं विला टाइप वैसे दिख रहे --

व दूसरी एक बिल्डिंग है ब्राउन कलर की और पिंक कलर की एक बिल्डिंग है पीछे वो येलो कलर की है।

वहां पे एक दो जन है आदमी है एक औरत बैठी हुई हैं।

अ नीचे यहां पे कुछ दरख्त भी दिख रहे हैं।

साइड में यहां पे कुछ और भी है जिसके अ इरदगिरद ग्रिल लगा --

ये मुझे एक स्कूल लग रहा है अ सैनिक स्कूल नाम से।

मैं तो यहां पे मुझे एक गेट लग रहा है जो अभी खुला हैं।

तो यहां पे साइड में एक साइड से एक ये आरा है।

साइड में भी डेकोरेशन बहुत है जो बीच वाला ब्लैक कलर का एक है और वाइट कलर का इसका एक टेबल सेट किया हुआ है ।

ये मुझे यहां पे शादी का हॉल लग रहा है क्योंकि वहां पे डेकोरेशन वैसा किया हुआ है।

इसके आगे यहां पे लगे हुए है बहोत सारे छोटे छोटे--

ये क्रोम है तो वहां पे एक साइड से --

काउंटर पे और नीचे ब्लैक कलर की इसकी कबर्डस है।

यहां पे ये अ लोहे का सामान इन लोगों ने बांधा हुआ है पूरा--

क्योंकि वो इसके इर्द गिर्द ना बैलून भी लगे हैं गुब्बारे भी लगे हैं।

तो वहां पे वो एक्सरसाइज करने के लिए साइकिल वगेरा --

मुझे वैसे ही लग रहा है क्योंकि वहां पे पाइप भी है बहुत सारी चीजें हैं वो पाइप भी है जिससे फूक देते हैं मतलब आयर डालते हैं।

ये मुझे कोई फाउंडेशन लग रहा है जहां पे सारे गरीब बच्चों को ना--

और बहुत तरीके से कपड़े हैं बाकी चीजें हैं वहां पे लगी हुई क्योंकि वहां पे बैनर एक लगा हुआ है।

अ आगे इसकी अम बहुत बड़ी खिड़की है ।

वो रेड कलर का इसका छत है और आगे ग्रिल भी बालकनी की रेड कलर की है ।

शायद उधर ऊपर बोर्ड भी है रेड कलर का वहां पे ऊपर लगा हुआ है।

लेकिन ज्यादातर हलि हरियाले ही नजर आ रहे हैं वहां पे ।

यहां पे मुझे लग रहा है यहां पे एक बोर्ड दिख रहा है खंबा है वायरस है।

वो तो ये मुझे एग्जैक्टली लग रहा है कि--

अ साइड में एक कलर की रेड की शर्ट पहने हुए एक ही चेक वाली शर्ट पहने हुए--